सामने में एक रोड है रोड के इर्द-गिर्द पौधे लगे हुए हैं बाइक खड़ी है स्कूटी खड़ी है एक स्कूटी चल रही है।